ये कितना बढ़िया टेंट है म देखने बहुत अतिक सुंदर लगता है।

यहाँ पर देखिए कितना हैन्डसम है और न घना जंगल बुझाता है। और देखिए अ एगो एगो है एगो घर भी है। देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहां पर लोग काफी है दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं ।

ढेर सारा मोटरसाइकल भी है कार अ उ उजरा रंग का सब है। एक बढ़िया कलर का है दिखने में काफी खूबसूरत है। तीन मंजिल है दे मकान दिखने में काफी खूबसूरत है। मोटरसाइकल भी ढेर सारा है। ग्लेमर अपाची --

पहाड़ी इलाका से देखिए पानी कैसे गिरता है। देखने मे बहुत सुंदर लगता है।

यहाँ पे पतरी भी है वहां पे बाती भी है। देखने में बहुत खूबसूरत है। दांत भी दो ठो है देख रहे हैं। बहुत अच्छा है गुड है। देखने में टेंट बढ़िया है।

यहाँ पे देखा जो गाछी भी है ढेर सारा नरियर का भी --

बहुत सारे और कार भी हैं। बहुत लोग खड़े हुए हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ मकान अ दो मंजिल तीन मंजिल के भी हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है खूबसूरत है।